आदमी ने नीला रंग का कपड़ा मोड़ा हुआ दिखाई दे रहा है पास में भी एक और आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

बोर्ड पर स्टेट बैंक ऐ टी एम लिखा दिखाई दे रहा है उसके ऊपर लाइट जलती हुई दिखाई दे रही है।

पेड़ दिखाई दे रहा है एक कांच का टुकड़ा पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है पीछे दीवारें दिखाई दे रही है खिड़कियाँ दिखाई दे रही है।

और खम्बे दिखाई दे रहे है गाड़ियाँ दिखाई दे रही है आसमान दिखाई दे रहा है बिल्डिंग दिखाई दे रही है।